और सामने भी कुछ लोग आ रहा है। ये भी नज़र आ रहा है और पीछे भी लाइट पोस्टर दिख- दिखाई दे रहा है और कुछ घास दिखाई दे रहे है।